किसी चीज का प्रोग्राम है बहुत ही सारा आदमी बैठे हुए हैं।

फैमिली के साथ और कुर्सी-उर्सी लगा हुआ हैं।

ओवर ब्रिज है ओवर ब्रिज का नीचे का फोटो है बहुत सारे हवा-हवाई गाड़ी है और ऑटो रिक्शा है छोटा-छोटा गाड़ी सब है ओटो है ।

मुजफ्फरपुर का चर्च है व्हाइट कलर का गोलंबर पर के चर्च है और हरा-हरा पौधा लगा हुआ है बहुत सारे बहुत सुंदर है ।

उम्म माला है फुल से बना हुआ भगवान को चढ़ाने वाला। एक व्यक्ति माला बेच रहें हैं। इसे छोटा-छोटा भी बनाकर।

मे जिम है इसमें एक ठो आदमी मोटा भी है जिनको है ताकि पतला हो जाए देख हो जाए और अच्छा लगे इधर--